और वो बनाया हुआ है इसमें लोग अपनी बॉडी मेंटेन रखने के लिए कसरत करने के लिए मॉर्निंग में आते हैं या शाम को आते हैं।

जो यहां पे एक बिल्डिंग बनाएंगे एक आदमी ऊपर खड़ा है और एक नीचे से--

और छत के ऊपर का छपरा बना हुआ है।